एक नवयुवक व्यक्ति एक्सरसाइज करता हुआ --

व्यक्तियों में एक महिला व दो पुरुष भेटे हुए हैं।

यह रात्री के समय में खींची गयी एक फोटू है|

एकदम नया ऑटो खड़ा हुआ है जिसके आगे दो हेडलाइट लग रही हैं।